लाल और अ हरी लाइट जल रही है सामने दीवार सफेद कलर की है एक घड़ी--

लाल पोस्टर लगा है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज --

लिखा हुआ है और पैसे छपे हैं ऊपर एक ए_सी --

यहां बहुत सारी दुकानें दिख रही हैं जिनमें ऊपर--

जिसके उस साइड दो तोते बैठे हुए हैं जो--

बनी है जिसके ऊपर पीले लोहे की जाली लगी हुई है और पीला--

रखा हुआ है और सामने एक आदमी--

यहां सड़क दिख रही है जिसके दोनों साइड हरे--

कुर्सी रखी हुई है और एक इस पर लैपटॉप रखा हुआ है माउस रखा है और एक--

कॉफी रखी हुई है दोनों साइड दूर कोने में दो गमले रखे हुए हैं सामने एक गेट बना है और पीछे--

रखी हुई है आमने-सामने कुर्सी है जो कथा--

दो सैनिटाइजर की बोतल रखी हुई है सामने दीवाल पर ऊपर टी_वी लगी हुई है नी--

कलर की कुर्सी है सामने दीवार पर एक नीला बोर्ड लगा हुआ है जिस पर तीन--

लाइट लटकी हुई है सामने दीवार पर ऊपर ए_ सी लगा हुआ है नीचे--

यहां एक ढॉल दिख रहा है जिसमें नीचे पिंक कलर की चटाई बिछी हुई है।

दिखाई दे रहा है और सामने गोल चार चूड़ी बनी हुई है जिनमें--

खड़े हुए हैं जिनके पीछे ऊपर रंगीन फूलों के गुलदस्ते--